यहां तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

यहां छोटे-छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ।

यहां छोटे छोटे तकिए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक छोटा सा कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां मे एक लाइट तथा बहुत सारे काउंटर दिखाइ दे रहे है।

सबसे नीचे में आर एस फर्नीचर मार्ट दिखाई दे रहा है।

सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां दो लोग सोए हुए भी दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारी सॉस के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं तथा शैंपू के भी डब्बे दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक रेस्टोरेंट है यहां बहुत सारे पौधे डब्बे में रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां हॉट लिप्स लिखा हुआ भी दिख रहा है।

यह एक मांगुर मछली है।

यहां पे अलग अलग प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रही है।

यहां एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ दिख रहा है।

यह विद्यालय सफेद रंग से रंगा हुआ दिख रहा है।

यहां बहुत लोग पेट्रोल भराते हुए दिख रहे हैं।

तस्वीर एक दुकान के अंदर की है।

यहां हवन सामग्री भी दिखाई दे रहा है यहां कुछ खाद्य उत्पाद भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मोबाइल चलाता हुआ दिख रहा है।

यह एक पार्क है यह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।